ये एक पहाड़ है और नीचे में खेत हरियाली है और कुछ लोग पहाड़ की ओर जा रहें हैं। पहाड़ के बीचो-बीच से पानी गिर रहा है और इसके साइड में एक फील्ड भी है।

यह एक प्रवेश गेट है और गेट में लिखा हुआ है कि छट एवंम कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर --

यह एक मंदिर है और मंदिर के पीछे एक घर है और घर के बालकोनी में शीशे लगे हुए हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर दिख रहा है और मंदिर के आगे झंडा भी फैराया गया है।

इसमें बहुत लोग भीड़ लगाए खड़े हैं और इस घर के ऊपर बालकनी में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसको लोग बारीकी से देख रहें हैं।